यहां एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है।

स्टूडियो का नाम हैं आई_पी स्टूडियो ॲण्ड प्रिन्ट वर--

यहां पर काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं।

मोटर साइकिल खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

जहाँ पर एक कूलर भी दिखाई दे रहा है और दो चेयर भी दिखाई --

यहाँ पर एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं।

गार्डन के बाहर काफी अच्छा व्यू भी दिखाई दे रहा है।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

यहां एक घर दिखाई दे रहा है।

और नीचे दो रिक्शा भी दिखाई दे रही है।

मंदिर में काफी अच्छी डेकोरेशन भी--